साइड से जाली लगी हुई है पिंजड़ा वाली जो की हरे रंग का है।

ब्लू और पीला कलर का चेक शर्ट पहना हुआ है और पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

ए सी रिफिलिंग व्हील एलाइजमेंट बैलेंसिंग कैशलैस इंश्योरेंस लिखा हुआ है।

उजले रंग के भी फूल है पीले रंग के भी फूल दिख रहे हैं और छोटे छोटे पौधे हैं जो की गमले में है।

दृश्य में जो दिखाई दे रहा है वह किसी गार्डन का है।

इसमें एक महिला लाल कलर की कपड़ा पहनी हुई है और एक और जो है वो बादामी कलर का कपड़ा पहनी हुई है और काले रंग के दुपट्टा है और जो दोनों आदमी ओ झोला--

ड्राइवर में दो तले हैं जो की सिल्वर रंग से है और दोनों ताला बंद है।

एक बच्ची है जो कि हाथ में थैला लिए हुए है जो ब्लू रंग में है और वो गंजी पहनी हुई है महरूम रंग के।

दृश्य में जो दिखाई दे रहा है वह बजाज की शोरूम का है।

शोरूम के अंदर दो ऑटो दिख रही है जो की एक पीले और हरे रंग में है और दूसरा ब्लू रंग में है।

कुर्सी दिख रही है जो कि लाल और काले रंग में है।

दृश्य में जो दिखाई दे रहा है वह एक रेस्टोरेंट का है।

गुब्बारे भी देख रहे हैं जोकि पीले और उजाले रंग में है।

इस समय जो दिखाई दे रहा है गली का है।

एक पीले रंग का प्लेट --

हरे भरे पेड़ दिख रहे है जो की हरियाली है और कुछ सुखार भी है जो कि पूरा सूख चुकी है लकड़ी और एक पेड़ तो बहुत--

में जो दीवार दिख रही है उसमें उजले रंग का पेंट है और जो बॉर्डर बनाई हुई है वह गोल्डन रंग का है।

हवा में गुब्बारे है जोकि ब्लू और लाल रंग के हैं।

जिसके सामने एक हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार ऊनीस जोकि उजले रंग से लिखा हुआ है उसके नीचे परनाम लिखा हुआ है जोकि पीले बोर्ड में है।

गूगल पे का स्कैनर भी देख रहा है।

दो लड़की का पुतला है जिसमें से एक को कत्थे कलर का लहंगा पहनाया गया--

एक उजले रंग का केक दिख रहा है जो की शीशा वाला काउंटर में है।

के सामने में भी एक सोफा रखा हुआ है जिसके ऊपर तीन तकिया है जोकी पीले रंग के हैं।

मछली में हाथ लगाया है जो की लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ है।

एक आदमी हैं जिसके सर और दाढ़ी दोनों लाल हैं।

ये दृश्य में से मुझे दिखाई दे रहा है वह मेडिकल से रिलेटेड का है।

दो आदमी है जो काले रंग के सैंडल पहने हुए हैं और एक आदमी काले और उजले रंग का जूता पहना--

रोलिंग चेयर है जिसमें बैठने से वह आगे पीछे हिलते दुलते रहती है वह भी भूरे रंग के हैं।

यह दृश्य जो दिखाई दे रहा है वह एक बिल्डिंग का है।

इसमें एक वीवो स्मार्टफोन का बोर्ड टंगा हुआ है जो की ब्लू और उजले रंग में है।

ब्लू रंग का बोर्ड है जिसमे अमला दही पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है जो की उजाले रंग में है।

उसमें हरा रंग का बोर्ड है जिसमें यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया जो की उजले रंग से लिखा हुआ है।